और यहां पे बड़ी बड़ी लाइट भी लगाई हुई है और--

और यहां पे बड़े बड़े टावर भी खड़े हुए है।

पंखे भी लगे हुए हैं और यहां पे अलग अलग कलर के--

यह एक बहोत बड़ा शहर है और यहां पे बहोत बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और यहां पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी--

और यहां पे जनता आ जा रही है यहां पे काला कलर का रोड --

ये बहोत बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए हैं और पेड़ के ऊपर--

अलग अलग कलर के कलर कर रखे हैं यहां पे सफेद भी कलर कर रखा है और यहां पर गमले भी बहुत ज्यादा रखे हुए हैं।

और यहाँ पे एक लड़की कुर्सी पे बैठी हुई हैं यहाँ पे पाँच कुर्सियाँ रखी हुई हैं।

और यहां पे एक डी_जे भी रखा हुआ है और यहां पे बड़े बड़े--

बाइक खड़ी हुई है और यहां पे बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए है।

और यहां पे बहोत बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर टंकी बनाई हुई है और यहां पे--

यहां पे बहोत बड़ी बड़ी क्रेन खड़ी हुई है यहां पे एक बिजली की टंकी को लगाया जा रया है और यहां पे दो दो जे_सी_बी आ गई है।

यहां एक बहोत बड़ा जंगल है और यहां पे--

लगी हुई है और यहां पे एक गाय जा रही है और यहां पे--